और एक नौका मे बहुत सारे लोग है जो कहीं शायद घूमने जा रहे है।

एक छोटा सा मंदिर है जोकि एक खुले मैदान के बीचो बीच है। इसके दो दो तरफ दो गम्बुज बैठा हुआ है और मैंन मंदिर के ऊपर --

ये सियरामस शॉपिंग मॉल्स के अंदर का पिक्चर है। जहाँ पे एक पोस्टर दिख रहा है। जहाँ पे एक आदमी खड़े है।

नीचे फ्लोर है। ऊपर की छत को राउंड शिफ़्ट मे रखा गया है।